ठीक है और समाने रास्ता है और ब्लू कलर में वोटर हैनदी हैं।

फैक्ट्री के साइड मे फील्ड है।

यहा पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है बिल्डिंग आधा कम्प्लीट है आधा इन्कम्प्लीट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी दिख रहा है।

और जो-यह ऊपर खुला आसमान है और जगह बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है।

चारच है और चारच में बोहोत लोग बैठे हुए है बहुत लोग प्रे कर रहे है यहाँ पे कैंडल्स भी जल रइ सामने लाईट लगा हुआ है और पंखा भी चल रहा है।

और चर्च का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है।

आ हैंडमेट हौ हैंडमेट में बहुत चीजे है ऊट -ऊट का चीज है किचन्स का चीज है।

और यहां पर डिफरेंट टाइप्स के डेरी प्रोडक्ट हैं जैसे की फर्स्ट हैमिल्कशेक फिर है फ्रेश क्रीम फिर है लस्सी और लास्ट में--